इस तस्वीर मे हमें एक औरत दिखाई दे रही है।

ये एक किराने की दुकान है जोकि सब्जी भी बेच रहे हैं और दो व्यक्ति भी वहा खड़े हैं।

जो की लाल कपड़ा में बाँध के खड़े हुए है और कुछ बैठे हुए हैं। आस पास बहोत सारे पेड़ भी मौजूद हैं।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति अपने दुकान पे बैठा हुआ है दुकानों पे सारे कपड़े--